बोतल भी रखा गया हैं और रूम के दीवार में पोस्टर भी चिपकाया गया है और बाहर में तगाड़ी रखा गया हैं।

ईंट बनाया गया है ईंट को काला नीला रंग से पेंट किया गया है।

और यहा पे रस्सी भी है और बाहर में घास भी दिखाई दे रहा और बहुत सारा पेड़ पौधा भी है।

काउंटर में लैपटॉप भी रखा गया है और पंखा भी रखा गया है और रूम में आदमीन भी दिखाई दे रहे और बाहर में जनरेटर रखा गया है।

खिड़की में सीसा भी लगाया गया और बिल्डिंग में रेलिंग बनाया गया है बिल्डिंग में गुब्बारा भी लगाया गया है।